इससे बड़ा मकान है तीन झूमर लगे हुए हैं।

और एक बगल में बड़ा सा मकान है मकान के ऊपर पानी की टंकी है।

एक स्कूटी है एक बाइक है स्प्लेंडर --

रिंग है और कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

दुकान भी है और उसमें कुछ पाउच टंके हुए है।

एक बहुत बड़ा मकान है और उसमें कुछ देवताओं की फोटो है और एक घड़ी लगी हुई है।

एक पर्दा है एक फूल है कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

एक बड़ा सा मैदान है उस मैदान में बड़ा सा मकान भी है और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

टीन का टप्पल लगा हुआ है कुछ ग्रिल है।

एक रेलवे स्टेशन है एक ट्रेन खड़ी हुई है।

दुकान में कुछ पर्दे ल लिए लगे हुए हैं एक बड़ा सा पेड़ है।

काम कर रहे हैं और मशीने डली हुई है।